बहोत मोटी-मोटी रखी हुई है।

चेहरा एकदम काला है। जीभ बाहर निकाली हुई --

यहाँ एक मैदान है। यहाँ पे कुछ झूले वगैरह दिखाई दे रहें कुछ बच्चे दिखाई दे रहें घोड़े पे बैठे हुए हैं।

चावल राइस रखे हुए हैं चिकन रखा हुआ है ग्लास रखे हुए हैं।

अं पीछे एक आदमी दिखाई दे रहे हैं।

उनके ऊपर ना गिरे और वो कटिंग करवा रहे यहाँ बैठके --

थोड़ा क्रीमी कलर पुता हुआ है। थोड़ा-सा हल्का-सा गाजरी जैसा कलर है। एकदम क्रीमी कलर बोहोत ही सुंदर दिखाई दे रहा है।

कुछ एरिया में लगी हुई हैं कुछ में नहीं लगी कुछ में एकदम सुखा है मिट्टी दिखाई दे रहा --

अंदर व्हाइट कलर पुता हुआ --

ब्लैक कलर का पिंजरा है लोहे का एकदम बहोत ज्यादा मजबूत।

यहाँ पे आटो दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे। बाइक दिखाई दे रही है। वे रुके हुए है शायद। बोहोत ज्यादा भीड़ है। ट्राफिक जाम हो गया --

अन्दर की तरफ हमें खेत दिखाई दे रहे हैं।

और यहाँ पे बहुत अन्दर की तरफ --